एक बहुत बड़ा टेबल दिखाई देरा है टेबल के ऊपर बहुत सारी फाइले और किताबे रखी हुई है साइड में बहुत सारे कुर्सी है टेबल के बहुत सारे आदमी भी बैठे हुए हैं।

लगे हुए खिड़कियों में दरवाजे पर एक पर्दा लगा हुआ है ।